मटमैला दिखाई दे रहा है और नीचे सफ़ेद और मटमैला दिख रहा है ऊपर--

हरे-हरे पेड़े लगे हुए है दूर उस किनारे--

बड़ा लोहे का गेट लगा हुआ है और रैलिंग बनी हुई है।

पेड़े दिख रहे है ऊपर सफेद आस--

छोटा सा चबूतरा है जिसपे तीन मूर्ति बनी हुई है जो दोनों साइड छोटी और एक बीच में बड़ी जो गोल्डन कलर की है जिनके सामने--

आ सामने एक बड़ी -सी दुकान दिख रही है जिसके बाहर तीन --

अ नीचे कुछ बैग लटके हुए है।

छै लोग खड़े हुए हैं और एक आदमी बैठा हुआ है।

साइड मे एक बिल्डिंग दिख रही है जो--

सामने एक नदी दिख रही है जिसका पानी ब्लैक एंड वाइट --

सफ़ेद कलर की है और--

और निचे भी पोस्टर लगा हुआ है जिसमे सफ़ेद बीकानेर स्वीट्स लिखा हुआ है और निचे भी कुछ --

कुर्सी का कलर सफ़ेद है सामने की दिवाल भी सफ़ेद है ऊपर छत का कलर --

हाजीपुर जंक्शन लिखा हा लिखा हुआ है और--

खम्भे बने हुए है जो ल लाल है।

लाल कलर की है और एक वाटर --

सामने कुछ घर दिख रहे है जो सफ़ेद है और पेड़ दिखाई दे रहे है ऊपर आसमान दिख--

एहहह नीला हरा और लाल सा आसमान दिखाई दे रहा है।

कलर की है और लाल पट्टी बनी हुई है उसके ऊपर--

झे दिख रहे है और एक नाव हैं जिसमे बहोत सारे आदमी दिख रहे हैं और किनारे पे--

सामने एक सफ़ेद बड़ी-सी हवेली--

लोहे की रेलिंग लगी हुई है बहुत से आदमी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे फुल के गुलदस्ते बने हुए है ऊपर छत रंगीन कलर की है और सफ़ेद फूल लाइट लगी हुई है बिच में बड़ी सी बॉल --

टब रखा हुआ है जिसके ऊपर नीली बोरी और आदमी खड़ा हुआ है और दोनों साइड--

खड़े है और उसके साइड मै घर है जो की दो मजिल है और सफ़ेद कलर का है जिसके पीछे पेड़ दिख रहा है और नाली है साइड --

दोनों साइडे चारो और पानी भरा हुआ है वो--

एक सल्तनरा पे कही-कही काली मिट्टी--

हरे पेड़ - पौधे छोटे लगे हुए है और उस साइड ऊँचे पहाड़ दिख रहे है जो ब्लैक एंड --

व्हीर्ट दिख रहे है और सड़क पर दो मोटर साइकिल खड़ी हुई है एक काली लाल है और एक--